ऑफिस के छत पर बहोत सारे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं।

तस्वीर में मुझे दो प्लेटफॉर्म्स दिखाई दे रही है।

तस्वीर में मुझे बहुत सारे टमाटर के पौधे दिखाई दे रही है।

तस्वीर में एक टूटा हुआ बाइक दिखाई दे रही है।

छवि में मुझे एक मछली बाजार दिखाई दे रही है।

में एक सलून के अंदर दो कुर्सीयां रखे हुए हैं।

दो गाड़ी भी है जिनको ऊपर उठाया गया है।

बिल्डिंग के कोने में एक सी_सी_टी_वी भी लगा हुआ है।

आगे बहुत सारे आयरन राडस लगे हुए हैं।

चट्टान से एक झरना भी बह रहा है।

जिसके सामने बहुत सारे पुतले रखे हुए हैं।

और बहुत सारे कपड़े शेल्फ के अंदर भी है।

उपर कई सारे बलब्स और पंखा भी दिखाई दे रही है।

तस्वीर में मुझे बहुत सारे बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है।

जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सामान रखे हुए हैं।